ई व्यक्ति कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहोत सारे टेम्पू हैं।

एक गाड़ी है जहाँ पे खड़ी है। ये चार चक्के हैं। ये स्वीफ्ट लगता है स्वीफ्ट सुजुकी का लग सकता है। पीछे भी एक बाईक खड़ी है और ये लाल कलर की जो पट्टी है बहुत अच्छी लगती है देखने में। ये पत्थर के द्वारा गयी है जो एक जगह पर रखी गयी है जो हैवी लगता है।

ये दवाएं देखने से लगता है। की बोहोत ही अच्छी है।